और सभी कलर के रंग बिरंगे कपड़े भी पहने हुए इत्यादि यही --

बड़ा ही सुंदर ये दृश्य दिख रहा है हमारे आँखों के सा --